इस तस्वीर में एक हरा भरा परिसर दिखाई दे रहा है जिसमें कई इमारतें बनी हुई है जिनकी छतें हरे लाल और पीले रंग की है।

द्वारा के बाहर घने झाड़ियां और पौधे उगे हुए हैं आसमान में हल्के के बादल है।

बाईं और एक नीला बाल्टी रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

बाएं ओर हरे भरे लंबे पेड़ हैं।

स्वीमिंगपूल में नीले रंग का साफ पानी और नीले रंग की लाइने बनाई गई है।

और साथ ही कुछ बोरी और प्लास्टिक कंटेनर भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में रेस्टोरेंट है बैठने वाले खुले स्थान दिखाई दे रही है।

बाएं ओर कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इधर हमे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम या नृत्य प्रस्तुति का दृश्य दिखाई दे रहा है।

जो झुका हुआ प्रतीत हो रहा है घर की खिड़कियां में नीली छीलमनी पर्दे लगे हुए हैं।

दाई ओर एक व्यक्ति सड़क पार करते हुए देख रहा है।

पीले रंग की होर्डिंग बोर्ड पर सफेद और पीले अक्षरों में दुकान का नाम और--

वो दुकान के अंदर दीवार पर मोबाइल एसेसरीज जैसे की चार्जर इयरफोन और बैटरी आदि टांगे हुए हैं।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

उनके पीछे घनी हरी झाड़ियां और पेड़ों के बराबर है।

इस तस्वीर में एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक सुंदर और रोशनी से सजा हुआ रात्रि चित्र दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लकड़ी से बनी सुन्दर कुर्सी और बेंच दिखाई दे रही है।

इसे चार खंबे सहारा दे रहे हैं।

के पास कुछ हरे पौधे और घास भी उग गई है।

चित्र में एक शानदार सोने के रंग का मंदिर दिखाई दे रहा है।

इन शेल्फों में प्लास्टिक या फाइबर से बने ढेर सारे प्लेट करीने से रखे गए हैं।

छत लकड़ी के बनी हुई हैं और उसमें सुंदर लाइटस लटक रही है।

जिसमें लाल और बैगनी रंग की पत्तियां हैं पीछे की ओर हरे रंग के कुछ पौधे है।